दिख रही है आइसक्रीम शॉप है शॉप के अंदर काफी धुंधला टाइप का है।

आगे में एक ट्री है बबूल का और उसके पीछे दो --

इसमें एक आगे लेस्पोर्ट का टी-शर्ट पहन कर के फोटो खिंचवा रहा है लड़का।

टिप टॉप ड्राई क्लीनर का बोर्ड लगा हुआ है जो की मालयाचक मोड़ जहानाबाद --

जो की बिजली से चार्ज होते हैं जो की बिजली से चार्ज होते हैं एक ग्री ग्रीन घर भी है।

और ग्रीन कलर के है और एक और बस उ भी कलर के है।